और लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं ऊपर बहुत सारे लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं और एक टीन दिखाई दे रही है।

बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं और नीचे टेबल पर कुछ समान रखा हुआ है।

और पीछे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है।